सामने में एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसका कलर ब्लू है।

यहां पर बहोत सारे रेलिंग भी है रेलिंग का कलर भूरा और काला है।

यहां पर एक बहुत बड़ा गेट है जिसका कलर काला है और यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

नीचे में बहुत सारी टाइल्से लगी हुई है।

सामने में एक बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है।

यहां पर टेबलो और कुर्सीयो का कलर काला है।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी और औरते है।

यहां पर बहुत सारे पौधे भी हैं यहां बहुत सारे घर भी हैं।

यहां पर बहुत सारी फूलें लगाई हुई हैं।

ने अपने हाथ में एक मशीन रखा है जिसका कलर ब्लू है।

यहां पर बहुत सारे लड़के है जो डांस कर रहे हैं।

बहुत सारी खिड़कियां हैं जिसमें बहुत सारे शीशे भी लगे हुए हैं।

यहां पर नीचे बहुत सारे कचड़े फेंके हुए हैं।

यहां पर बहोत बड़े बड़े पेड़ भी हैं यहां पर बहोत सारे तारे हैं।

बोर्ड भी है जिसमें तार लगा हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ा पोस्टर है जिसमें बहुत सारी फोटो चिपकाई हुईं हैं ।

यहां पर बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई है जिसका कलर काला है।

यहां पर एक औरत भी है।

यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं यहां पर बहुत सारी पोले हैं जिसमे तार भी है।

यहां पर एक पौधा भी है।

यहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी है।

यहां पर बहोत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

यहां पर बहुत सारे करकटते लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारे गेटे हैं जिसका कलर ब्लू है।

बाहर में बहुत सारे घर हैं।